आमने-सामने देख रहे है एक दूसरे को काई आंटीज आंटियाँ भी हैं।

ये शॉप है रेस्टोरेंट इसमे व्यक्ति कॉफी को हाथ में लेके खड़ा है।